बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है आधार काउंटर चाणक्यपुरी एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट सेंटर --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं ये एक बेडरूम दिखाई दे रहा है जिसके गेट का कलर ब्राउन कलर का है।

बेड भी ब्राउन कलर का है जिसमें रेड और वाइट कलर का बेडशीट बिछा हुआ है साथ ही में वाइट कलर का एक ब्लैंकेट दिया हुआ है।

गाड़ियों के साइड में एक बेकरी टाइप दिया हुआ है जिसमें कोल्ड्रिंक्स और स्नैक्स दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ही रेड कलर का है।

सामने एक कार खड़ा हुआ है उसके आगे कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई है साइड की ओर एक बोर्ड बना हुआ है जिसमें एक आदमी की फोटो लगी हुई है और एक स्ट्रीट लाइट भी दिखाई दे रही है।